में स्पार्की लिखा हुआ है वाइट कलर से दो छाते टंगे हुए हैं ।

कॉमन सर्विस सेंटर ब्लू कलर के लिखा हुआ है एक टेबल है जिसमें जेरॉक्स मशीन रखा हुआ है।

यह घर के बाहर का दृश्य है।

एक बस है एक आदमी खड़ा है जिसने प्लास्टिक लपेटा हुआ है।

एक कार भी है जो पानी में डूब रहा है उसका कलर व्हाइट है।

एक औरत हाथ उठाए हुई है।

यह एक रूम का दृश्य है यहां पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं।

एक आदमी अपने हाथ में पेपर रखा हुआ है और नीचे ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है।

जमीन में पर्दा बिछाया गया है जिसका कलर ग्रीन है।

एक साइकिल खड़ी हुई है जिसका कलर पिंक है अंदर घर का कलर येलो है।

एक शीशा है जिसके नीचे एक गमला रखा हुआ है जिसमें पत्ते रखे हुए हैं।

यह एक हॉल का दृश्य है जहां पर एक लड़की डांस कर रही है ।

मीन में तीन बोलोरो है तीनों बोलेरो का रंग व्हाइट है।

एक लाइट जली हुई है इसका कलर व्हाइट है बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर बहुत सारे टेबल कुर्सी रखे हुए हैं टेबल का कलर व्हाइट है।

यह दुकान के बाहर का दृश्य है।

घन के बाहर एक आदमी खड़ा है दुकान के बाहर में दो ऊपर से टंगे हुए हैं।

तीन बाइक है दो बाइक जा रही है जिसमें दो लड़का बैठा हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य है जहां पर एक आदमी बाइक चला रहा है।

नीचे फर्श का कलर ग्रीन है बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

जिसका कलर रेड है एक टेबल है जिसका कलर ब्लैक है।

जिसमें एक आदमी है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है बहोत सारे लाइट है।